और आप देख सकते हो बारिश भी आ रही है हल्की हल्की जो बूंदे आपको इस पानी में दिख रही होंगी।